ईंटे भी बिछे हुए है।

इसमें दो व्यक्ति भी दिख रहे हैं।--

इस पिक्चर में एक रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है।

खाने-पीने दोनों के समान मिल रहे है।

अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

जिसमें काफी सारे --

और कुछ ट्यूबलाइट्स भी लगी हुई है।

इसमें कुछ घर भी दिख रहे हैं।

खाना खा रहे हैं ।

इस पिक्चर में एक खेत दिख रहा है।

जिसमें खेती की गई है।

कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

पेड़ भी दिख रहे हैं।

कुछ लाइट्स भी दिख रही है।

जिसमें काफी सारे लड़कों के कपड़े दिख रहे हैं।

पोंड भी बना हुआ है।

और इसकी दीवार का कलर --

नदी के दूसरे छोड़ पर --

यह पिक्चर एक साड़ियों की दुकान का है।

जिसका नाम राधा रानी फिक्स प्राइस शॉप है।

व्यक्ति भी दिख रहा है।

काफी सारे पेड़-पौधे भी हैं।

और इसमें घास भी उगी हुई है।

साफ सफाई भी की जा रही है।

जिसमें काफी सारे लोग --

बढ़िया भी दिख रही है।

पीछे एक व्यक्ति भी है।

और इसमें कुछ ट्यूबलाइट्स भी लगी हुई है।

और ऊपर लाइट्स भी दिख रही है।

इस पिक्चर में एक काफी बड़ी सीढ़ी दिख रही है।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

एक फैक्ट्री दिख रहा है।

जो ग्रिल्स और लोहे से बना हुआ है।

इसमें कुछ वर्कर्स भी --

नीचे की साइड वाइट मार्बल है।

और इसमें काफी शानदार--

और इसके नीचे खास उगी हुई है।

पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

और इसके चारों तरफ घास ही घास है।

इसमें पीछे कुछ पेड़-पौधे भी हैं।

काफी सारे घर दिख रहे हैं।

ग्रोसरी स्टोर का है।

मैरिज हॉल का है।

जिसमें काफी खूबसूरत मरकरी लगी हुई है।

इसमें काफी सारे लोग दिख रहे हैं।

और इसमें काफी सारे खिलौने --

और भी सामान दिख रहे हैं।

कुछ व्यक्ति भी दिख रहे हैं.

जो एक वाइट प्लेट में है।

जिसमें काफी सारे व्यक्ति --

बंगलों का गेट भी है।